यह नाव पर आदमी भी बैठे हुए हैं।

यह एक सड़क है। यह सड़क पर बहुत सी गाड़ी आती-जाती है। यहाँ पर बहुत सारे आदमी भी आते-जाते है।

इसे भाड़े में चलाया जाता है।

इस मैदान के किनारे एक सड़क है।

यहाँ पर तीन टोटो खड़े है। यहाँ टोटो तीन कलर के है।

यहाँ पर बड़े-बड़े पेड़ --

ये घर है यह घर काफी बड़ा है इस घर को काफी सुंदर से किया गया है इस घर मे एक स्टेज बना हुआ हुई है।

इख नदी में मछली भी है।